नीचे में ग्रीन कलर का कारपेट बिछा हुआ है।

यहां पे रास्ते के पास एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है जो बंगलो टाइप का बिल्डिंग है सुंदर सा और वेलकमिंग है दो--